तारो ओर हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

लोहे के रॉड भी नजर आ रहे हैं।

दो व्यक्ति भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

तथा कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है।

कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही है।

इसमें कई सारे टीवीयाँ भी रखी हुई है।

सारी खिड़कियां भी दिखाई दे रही है।

तथा सामने दो आईने भी नज़र आ रहे हैं।

एवंम उसमें कुछ किताबें भी रखी हुई है।

एवं जमीन पर दो नीले रंग के बॉक्स नजर आ रहे हैं।

मस्जिद का दृश्य दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य दिखाई दे रहा है।

जिसका रंग कला में है।

और कुछ रस्सी भी दिखाई दे रही है।

नीचे से नदी भी बह रही है।

या एक रोड का दृश्य दिखाई दे रहा है।

कार भी नजर आ रहे हैं।

एवं जमीन पर पत्थर भी लगे हुए हैं।

बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

एवम दीवार पर एक पोस्टर भी है और एक पानी का बोतल भी --

इस पर कुछ सामान भी रखे हुए हैं।

एवम कुछ गमले भी दिखाई दे रहे हैं।